यहां पर कुछ बाइक्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ गाड़ियां दिखाई दे रहे है।

और कुछ कुर्सियां और टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

कुछ मिट्टी का ग्राउंड दिखाइ दे रहा है और कुछ घास दिखाई दे रही हैं।

कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

जो कि पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ बैनर्स लगे हुए दिख रहे हैं और एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

बिजली की तारें दिखाई दे रही है और आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और कुछ--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

और नाइट व्यू दिखाई दे रहा है।

पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रही है।

आमसान दिखाई दे रहा है और कुछ पानी साफ नहीं दिखाई दे रहा है।